यहां एक मकान दिखाई दे रहा है जिसपे रामा कलर पुता हुआ है कुछ लोग दिखाई दे रहे है सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है काली व सफेद पन्नी दिखाई दे रही है पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे पेड़-पोधे रहे हैं जिनमें रेड कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा रहा है जिसपे लाल कलर पुता हुआ है उसके ऊपर एक गुंबद दिखाई दे रही है बिजली के तार दिखाई दे रहे है झंडा दिखाई दे रहा है।

धीन कलर की ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है बहुत सारी दुकाने दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।